नर्सरी के अंदर कुछ व्यक्ति और कुछ महिला कार्य कर रही है।

आउर हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में एक खम्भा दिखाई दे रहा है।

अउर साइड में पंखे भी लगे हुए हैं।

मंदिर पर गुलाबी कलर का पेंट हो रखा है।

दुकान पर सफेद कलर कह पेंट हो रखा है।

अउर उसके हाथ में नीले कलर का फोन है।

अउर साइड में एक दीवार है।

और तालाब में बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं।

आउर साइड में कांच का दरवाजा भी दिखाई दे रहा--

यह एक बहुत सुंदर रास्ता है रास्ते पर एक रिक्शा खड़ी हुई है।

जिस पार्क में एक बोर्ड लगा हुआ है।

और नीचे लाल रंग की ईट बिछी हुई है।

रास्ते की साइड में पुल बन रहा है।

यह एक बहुत सुंदर बच्चों का ग्रुप है।

यह एक बहुत सुंदर पेट्रोल पंप है।

यह एक बहुत सुंदर पंडाल है।

और सामने स्टेज भी दिखाई दे रही है जिसे फूलों से सजाया हुआ है।

आउर पानी में बहुत से बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

जिससे लाइट के तार जाते दिखाई दे रहे हैं।